मुझे इस फोटो में घर दिखाई दे रहा हैं।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

मुझे इस फोटो में नीले रंग का स्टूल दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

एक जे_सी_बी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे कुरकुरे दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बोहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में लाइटें दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में इस्प्राइड की बॉटल दिखाई दे रही है।